हरा-हरा घास दिख रहा है।

गेंदे का फूल रखा हुआ है चमेली का फूल रखा हुआ है।

ऊपर बादल है बड़ा सा पेड़ है।

उसके अगल - बगल में बहुत बड़ा - बड़ा --

और ये बहुत सुंदर सा व्यू दिखाई दे रहा है।

और ये बहुत सुंदर सा व्यू दिखाई दे रहा है।

और इसके आसपास बहुत सारा गाड़ी खड़ा हुआ है स्कूटी खड़ा हुआ है।

और ये बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है आसपास पेड़-पौधे दिखाई दे रहे--

यहाँ पर बहुत सारे अपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं।

जो की बहुत बड़ा है आस-पास बहुत सारे--

बहुत अच्छा -सा डेकोरेशन हुआ है लाइट --

जो की ग्रीन कलर का है।

दुकान में जितने भी राशन समान है वो रखा हुआ है सामने--

बहोत अच्छा सा बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ--